यहा पे बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही हैमौसम भी साफ दिखाई दे रही है यहा एक दोपहर का फोटो दिख रहा है।

ये मुझे एक मंदिर का फोटो दिख रहा है जहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए आए हुए लग रहे है जहाँ की मंदिर फो- मंदिर के अंदर बहुत सारे भीड़ भी दिखाई दे रही।

यहाँ मुझे आह मौसम भी साफ दिखाई दे रहा है ये एक रात का फोटो हो सकता है यहाँ पे मुझे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है जहा की फाउंटेन बूथ की लाइटिंग बहुत अच्छी दिखाई दे रही है।

इसका पत्थर कि बनी हुई टाइल्स दिख रही हुई है जहाँ मौसम भी साफ दिखाई दे रहा है जहाँ ये --

यहाँ पे मुझे एक रेस्टॉरंट दिखाई दे रहा है जहा मुझे एक बच्चों की एक अह बैलगाड़ी भी दिखाई दे रही है जो की बहुत अच्छी दिख रही है जो की गोल-गोल घूमते हुए देखे जा सकती है जैसा कलर पिंक दिखाई दे रहा है उसके बीच मे एक छोटासा पौधा भी रखा हुआ दिख रहा है।

यहां पे मुझे बहुत सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है ये एक अह शॉपिंग मॉल हो सकता है।

यहाँ पर मुझे एक फॅक्टरी दिख रही है जहा पे एक एंट्री गेट भी दिखाई दे रहा है जहा पे रेड पट्टियों से रोका रास्ता रोका ज्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुझे ब हा एक बिल्डिंग दिख रही है जिसपे लोहे की जरिये से--

दा ये बहुत ही अच्छा फोटो दिख रहा है त्याच फोटोमध्ये देख कर मुझे पीस फील हो रहा है दा ये फोटो एक सुबह का फोटो दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे मुझे एक क्लासरूम दिख रहा है यहाँ पे मुझे बहुत सारी बेंच और सिटिंग प्लेस आ बेंच दिखाई दे रही है।

कलेक्ट करे जाते है यहाँ अपने पिंजो मे बहुत सारी मुर्गीया रखी हुई दिखाई दे रही है यहाँ सारे मुर्गीयो का कलर व्हाइट और येल्लो दिखाई दे रहा है।